जिसमें एक आदमी अंदर की साइड में जाते हुए दिखाई दे रहा है एक आदमी यहां --

काफी हरा भरा घास है यहां पे दिखाई गई है एक बड़ा पेड़ भी दिखाया गया है यहां पे --

डब्बा भी रखा गया है यहां पे सुंदर डिजाइन में एक दीवार और भी दिखाई दे रही है।

कैलेंडर भी रखा हुआ है सीनरी का।

बहोत सारी लाइट लगी हुई है यह घर के अंदर बनी हुई है और यहां पे छज्जा लगा हुआ है जिसको ये ऊंचाई --

ऊंचाई से दिख रही है यहां पे इसके पंख भी लगे हुए हैं यह एक एरोप्लेन का चित्र बना हुआ है।

जिसने पीले कपड़ा पहन रखे हैं इसने मुह पे मेकअप करवा रखा है इसके हाथ में मोबाइल भी है जो शीशे के सामने बैठकर अपनी फोटो खींच रहा है।

यहाँ अभी शॉप की नई-नई ओपनिंग हुई है यहाँ पे बड़ी सारी माला चढ़ाई गयी है।

ठेली रखी हुई है ब्लू कलर की आदमी भी खड़ा है जिसने येलो कलर की टी-शर्ट और ब्लू कलर का पजामा पहना है।

सरा उसमें कुछ काम कर रहा है।

मुख्य अभिनेता इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहां बोर्ड लगा हुआ है यह एक जगह जहां पे--

यह मार्बल की बनी हुई है पथरीली बनी हुई है कृष्ण जी की मूर्ति कृष्ण जी ने बांसुरी दे रखी है गोल्डन कलर की और यह वो --

यह एक सुंदर पार्क दिखाया गया है जिसके बीचों बीच एक बना हुआ है जिसमें पानी डाल के रात को लाइटें जगा के फुव्वारे चलते हैं।

नीचे कुछ यात्री हैं जो बैठे हैं और इधर एक दुकान भी दिखाई गई है जो अभी बंद है यहां पे एक कचरे का डब्बे के बाल्टियां भी गिरी हुई है।

ये धुंधली सी फोटो दिख रही है यहां पे लड़कियों ने औरतों ने इतने लंबे लंबे सिंदूर लगा रखे हैं।

यहां पे कोई पूजा चल रही है जहां पे बहोत सारी औरतों ने टोकरियां ले रखी है बड़ी बड़ी जिनमें बहुत सारे फल फ्रूट रखे हुए हैं।

यह एक पार्क जैसा दिखाया गया है जिसके सामने एक गुलाबी कलर की दीवार है जिसमें एक जाली का गेट लगा हुआ है बड़ा और एक छोटा --

फल फ्रूट्स रखे हुए हैं और यहां पे दीया जलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे पैसे भी रखे हुए हैं मंदिर पे।

और रोशनी भी है सूरज की किरणें पड़ रही हैं यहां पे बहुत सारी बिल्डिंग और शॉप है नीचे।